ऊपर से आया है और ऊपर में झालर भी लगी हुई है।

पे खिड़की भी है दो ठो ऊपर में खपड़ा का घर भी है इधर में सीढ़ी है जो में टाइल्स लगी हुई है और रेलिंग भी मारा हुआ है।

पांच छह गो पाया भी नीचे है और नीचे में फूल पौधे भी हैं।

नीचे में भी बहोत सारे खिलौने भी है।

इधर में अलमारी पर डिब्बा का भी डिब्बा में भी डिब्बा भी बहुत सारे रखे हुए हैं।

यहां पे एक रूम है ऊपर में टाइल्स लगी हुई है।

यहाँ आँचन में टाइल्स लगी हुई है।

उधर इधर खेत भी है उधर पेड़ भी बहोत बड़ा बड़ा है।

यहां पे बहोत सारे कुर्सियां रखी हुई है।

बहुत बड़ा दीवाल का बना दीवार पे लिखा हुआ है।

यहां पे बहुत सारा बाइक लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे आदमीन भी हैं और यहां पे एक ठेला भी है उसपे समान है।

यहां पे बहुत सारे आदमीन भी दिख रहे हैं।

ऊपर में भी टाइल्स लगी हुई है उधर बैलून भी लगे हुए है।

इधर बहुत सारे घांस भी दिख रहे हैं।

जो एक मिट्टी कलर का गेट भी है।

ये कॉपी की फैक्ट्री है और यहां पे बहोत सारा डायरी कॉपी बहोत सारे हैं।

घर में एक शीशा भी लगे हुए हैं।

और ये उधर में शीशा का गेट भी लगे हुए हैं उधर प्लाई भी रखी हुई है।

ऊपर में पेड़ भी बहोत सारे दिख रहे हैं और--

और यहां पे आदमीन भी बहोत सारे दिख रहे हैं।

और यहां बाहर में भी पोस्टर टांगा हुआ है।

जेमे टाइल्स भी लगे हुए हैं इधर में साड़ी सूट फ्रॉक बहुत सारे हैं।

और यहाँ पर बहुत सारे पत्थर भी हैं।

उपर में भी एक पोस्टल टांगा हुआ है।